दो गधे की फोटो है इसमें एक बॉल पड़ी है दो बॉल उधर है दो गधे हैंजो बहुत ही सुस्त दिखाई दे रहे।

और चार प्लेटें हैं एक पानी की बोतल है और एक कटोरी है दो टिश्यू भी अच्छे से पड़े हुए हैं।

यह एक जिम का फोटो है जिसमें एक लड़का जिम कर रहा है एक लड़का ट्रेडमिल पे चल रहा है ऐ.सी. अच्छे से चल रही है ये |

इनमें दो बच्चे दोड़ रहें हैं और तकरीबन आठ बच्चे बैठे हुए हैं।

पानी पीने की व्यवस्था भी है औरतें अपना बैठ कर बहुत अच्छे से काम चला रही है और--

से हाथ मिला रहा है और जो है बहोत सारे झूले लगे हुए हैं और एक औरत भी जा रही है बहोत सारे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं।